पहाड़ के ऊपर तार लगा हुआ है और उस तार में एक मशीन है जिसमें किसी भी लोग को बैठा के पहाड़ की दूसरी तरफ इप पहुंचाया जाता है।

सर लोग है जो फोटो खीच रहे हैं।

चेयर लगा हुआ है और गमला में पौधा भी लगाया हुआ है।

यह एक आदमी भी दिख रहा है उधर एक ब्लू बाल्टी दिख रहा है बोतल भी दिख रहा है।

पूरा लाइट भी लगा हुआ है नीचे पूरा टाइल्स भी लगा हुआ है।

बहोत सारा पत्ता भी उड़ के आ गया है।

दोपहर का टाइम है।

ये कोई क्रिकेट ग्राउंड का चित्र लग रहा है यहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक चित्र है जहाँ मुझे दो घर दिखाई दे रहा है और इधर बीच में एक बड़ा खम्बा भी है।

नीचे टाइल्स भी लगा हुआ है इधर कुछ लिखा हुआ भी है।

बहुत सारे रैक में बुक सजाया हुआ है।

यहां स्टोर के बाहर तीन आदमी भी खड़े हैं।

ये कोई टाइल्स का दुकान का चित्र दिख रहा है जहां पर काफी सुंदर सुंदर टाइल्स सजा के रखा हुआ है।

ये पहाड़ काफी बड़े बड़े है।

पूरा सफेद कलर किया हुआ है उसके अंदर टेबल कुर्सी भी दिख रहा है।

नीचे पुरा टाइल्स भी लगा हुआ है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा।

इधर खंबा भी दिख रहा है खंबा में काफी तार भी लगा हुआ है ।

बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है जूता के इधर एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है जो बंद है।

ये कोई कपडे का दुकान का चित्र है जहां पर रैक में बहुत तरह तरह का कपड़ा मोड के रखा हुआ है।

यहां चापाकल भी दिखाई दे रहा है बहोत सारा।

सड़क के किनारे में दुकान है दिख रहा है ।